यह एक ऑफिस या क्लास का फोटो है।

यह एक ग्राउंड के बाहर की फोटो है ये पेड़ पम है सामने--

कोल्लटर पड़े हुए है बड़ी-बड़ी चटाने पड़ी हुई है।

एक लड़की छोटी सी पास में बैठी है जिस के पीछे कार साफ करने का हार्पिक रखा है।

यह एक नदी है।

ये सब ने माक्स भी लगाया हुआ है।

घना जंगल है पथरों पे छुई है बहुत बड़ी-बड़ी चटाने दिखाई --

एक बाइक वगेरा खड़ी हुई है एक अंकल जा रहे है एक पीछे भी खड़ी हुई है टीन शेड में वाइट कलर की --

यह एक लड़का है जो कि इन पेचे से बने हुए टिप्पनों से खड़ा हुआ है।

पीस्ट कलर की दीवार दी गयी है पीछे तीन खिड़कियाँ है।

एक कार हवा में लिफ्ट करी गई है।